और सामने हैंगिंग में लेडीज कुर्ती टंगी हुई है।

पीछे के तरफ टॉप और कुर्तीस भी दिखाई दे रहै है ।

और एक लड़की डांस सीखा रही है रेड कलर की सूट पहने हुए गोल्डन दुपट्टे बांध के --

यहाँ पे हरी हरी हरी भरी बादिया दिख रही है छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे है ऊंचे नीचे पहाड़ --

पीछे की तरफ में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है कोई मकान नहीं है बस पेड़ ही पेड़ है।